यहां पर कुछ लोग देखा जा रहा है जहां पर मशीन है जो नापने की और वहां पर कुछ एक व्यक्ति जो है ना नोटडाउन करते हुए दिख रहे हैं।

वहाँ पर काफी सारे माउंटेंस दिखाई दे रहे है और अन्य हरे पेड़ नज़र आ रहे है और बाइक दिख रही है जो रेड कलर की है जिस पर एक बाइक सवार नज़र आ रहे है और एक मीनार दिख रही है जहाँ पर घड़ी भी नज़र आ रही है।

बड़े पत्थर की चट्टान नजर आ रही है जहाँ पर काफी सारे --

पौधे वहाँ से दिख रहे है जो हरी घास है और नीचे में काफी रूट्स दिख रहे है और पत्थर वहाँ पड़े हुए है और एक व्यक्ति जो है वो फोटो लेते हुए नज़र आ रहे हैं।

यहां पर एक कार्यालय दिख रहा है जहां पर हेल्थ का दिख रहा है सिस्टम और यहां पर जो है लोग नजर आ रहे है जिनमें कुछ लोग ने मास्क पहना हैं तो कुछ ने नहीं पहना है।

पानी नजर आ रहा है क्रीम कलर का और वही फैन दिखाई दे रहे है लाइट्स दिखाई दे रहे है।

पत्थर चट्टान नज़र आ रही हैं और काफी जो वहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एक महिला वहाँ दिखाई दे रही हैं।

और एक गुफा तरह वह नज़र आ रहा हैं। जहाँ पर हर एक पेड़ नज़र आ रहा हैं। पौधे वहाँ लगे हुए हैं घास लगी हुई जो सुखी हैं और गीली हैं और काफी ले रहे हैं।